तथा कई सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं पीछे साइड ।

कहां पर कई सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

तथा सामने के बोर्ड पर मां राम प्यारी हॉस्पिटल लिखा हुआ हैं।

यह किसी शादी के घर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोहे के मदद से बने कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के सामान भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एवं एक गाड़ी का बोनट खोला हुआ दिखाई दे रहा है।

एवं कई दो बैंच भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह किसी गमले का पॉट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिनका रंग एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा है।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

एवं कई सारे लोग पूजा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ।

एवं सामने पर एक टायर भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे साइकिल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी हॉस्पिटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां किसी नदी या झरना का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे लोग पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एवं इसके सामने कई लकड़ियों के सहारे एक छत भी बनी हुई दिखाई दे रही--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

वहाँ पर कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सीलिंग पर दो टोकरियां भी लटकी हुई दिखाई दे रही है जिस पर कुछ सब्जी रखे हुए हैं।

तथा कई सारे लाइट भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं ।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

एवं कई सारे बिजलियों के तार भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां पर कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एवं इसमें जमीन पर कई सारे हरे भरे घास भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एवं लोहे कि मदद से बने दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे हरे भरे छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं ।

और इस जमीन पर कई सारे हरे भरे घास भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।